और बहुत सारी बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं।

और लाइट भी दिखाई दे रही है।

ईमान भी दिखाई दे रहा हैं।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारा खाने पीने का सामान दिखाई दे रहा है।

और यहां पर छत भी दिखाई दे रही है दीवार भी दिखाई दे रही है दीवार पर भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है।

ये घर भी दिखाई दे रहा है।

फ्लोर भी दिखाई दे रहा है फ्लोर में टाइल्स लगी हुई हैं और बहुत बड़ा ड्रॉवर भी दिखाई दे रहा है।

और एक इसकी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बहुत सारी चेयर्स दिख रही हैं लोग दिखाई दे रहे हैं लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहे--

और मिरर भी दिखाई दे रहा है और यहां पर दीवारें भी दिखाई दे रही हैं।